ये जो एक मॉल है।

पूजा कर रहे है और अगरबत्ती दिखा रहे हैं।

और उठने-उठने नृत्य को प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन तरह से आकर्षिक के साथ कर रहे है।